जोकि नीले रंग और सफेद रंग और गुलाबी रंग और लाल रंग का कंबीनेशन है।

ये जो कि शायद एग्जाम दे रहे है क्योंकि वहां पे दो एग्जामिनर भी खड़े हुए है पीछे देखिए।

ये कोई कंपनी दिख रही है जिसकी छत नीले रंग की है।

ये एक स्विमिंग पूल का दृश्य है जिसमें की कम से कम सात आठ बच्चे हैं।

एक जनो नें लाल कलर का शर्ट और सफेद लुंगी पहनी हुई है।

बीच में आप देख सकते हैं अग्रसर महाराज जी की फोटो लगी हुई है टेबल पे।

यहां पे इंडेन गैस के बारे में बताया गया है।

और इनके ठीक सामने इनके कोच खड़े हैं जो शायद इन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से स्केटिंग करना है।

मजदूर है काई और उसके बाद में ठेकेदार भी है।

इधर उन सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और मजदूर अपना काम कर रहे हैं।

जिसमें येलो फ्लावर रखे हुए हैं और शोपीस में कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट रखे हुए है।

लेकिन खंडहर काफी वीराना है और सुखी इसकी जमीन है।

जहां की आप देख सकते है इसके अगल बगल काफी हरियाली है हरे भरे खेत--

और आप बाई तरफ देख सकते हैं काफी लोग बैठे हुए हैं भीड़ लगाकर।

आप देख सकते हैं बाहर एन_आर_एम बड़ी बड़ी होर्डिंग में लिखा हुआ है।

और नीचे ठीक उसके बोर्ड के नीचे फूलों का एक तोरन लगा हुआ है।

और अंदर पिंक कलर की शर्ट वाइट कलर का पैंट पहना है इसने।

बहुत ही साफ सुथरा जिसपे लाइट के लगातार खंभे लगे हुए हैं एक बाद एक।

ये छत्तीसगढ़ का एक महाविद्यालय दिखाई दे रहा है।

और बाहर एक आदमी खड़ा है जो की किताबें लेने आया है।

सर पे किसी ने गमछा लपेटा है किसी ने नहीं लपेटा है।

आप देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट वॉल पे टंगी हुई उनकी एक हैंगिंग की हुई मूर्ति है।

जिसमे हमें लगभग पंद्रह झंडे लगे हुए दिख रहे हैं।

और उनकी पूजा करते हुए सफेद कपड़ों में पुजारी हैं।

और कुछ छोटा सा मीनार जैसे या फिर टाइम क्लॉक जैसे दिख रहा है वो।

औस उसी सड़क पे से एक लड़की जाते हुए दिख रही है।